और ये यहां पे बहुत सारे शॉप होते है बहुत सारे शॉप रहते है हर एक सामान जितने भी सामान होते है बाजार मे मार्केट में मिलता है।

बोहोत ही सुंदर लग रहा है और लड़का पूरा ब्लैक ड्रेस में है और एक पीला कलर का जो है गमछा रखा हुआ है लड़का।